काफी सारे इसमें लोग दिखाई दे रहे है जिन्होंने सर पे टोपी और रुमाल भी बांधा हुआ है।

बाहर जो है इसमें चार व्हाइट लाइट की लगे हुए लैंप जैसी और रेलिंग भी इसमें बनी हुई है पत्थर वाली।

और बीच में सड़क चलने वाली सड़क--

और बच्चों की जो है चीज के पैकेट बीच में दिख रहे हैं पानी की बॉटल भी रखी हुई है और काफी सामान रखा है।

बाहर एक छोटा सा गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन में जो है --

नदी के बाहर जो है हरियाली जो है घास दिखाई दे रही है कुछ मैदान दिख रहा है जिसमें घास भी दिखाई दे रही है।

पानी जो है बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और इसमें स्विमिंग पूल में कोई भी नहीं है।

व्हाइट कलर का शर्ट पहन रखा हैं और जो है नींव पे जो खड़ा है वहां पे लोहे के --

इसमें एक जो है बड़ा सी पराती दिखाई दे रही है।

इसमें एक दुकान दिखाई दे रही है जो की कॉपी किताब से भरी हुई है।

ये एक रिज़ॉर्ट की जो है तस्वीर लग रही है।

पौधों के पीछे छोटी छोटी जो है दीवार है जिसमें नीला लाल पीला पेंट भी हो रखा है और छत पे भी पेंट हो र --

और छत पे जो है पंखे लगे हुए हैं और ट्यूबलाइट भी इसमें लगी हुई है।

स्टेडियम में काफी सारे जो हैं लोग दिखाई दे रहे हैं एक लड़का जो है बैठा हुआ है सीढ़ियों पे।